आहाय बाग अभी चित्र दिख बनाया गया है जो की मस्त अहि दिख रहा है। लकड़ी भी मजबूत दिखाई दे रहा हैं।

यह बहुत पुराना दुकान जैसा दिख रहा है जो की पुस्तके और प्रिंटर और सिस्टम जैसा दिखाई दे रहा है और--

और उधर मंदिर जैसा डिजाइन में बना हुआ--

बदलील किया हुआ एक मंदिर दिखाई दे रहा हैंजो रंग बिरंगा दिखाई दे रहा हैंऔर एक तिरशुल का --